डब्बे का कलर पीला दिखाई पड़ रहा है।

पीछे की और एक बोर्ड लगा है जो की सफेद और हल्का नीला रंग का--

में एक घर बनाया हुआ है जिसके ऊपर नीले रंग से कुछ लिखा हुआ है।

इस तरह से हमें बहुत सारे सोफे और चेयर नजर आ रहे हैं जो कि नीले रंग के हैं उन पे पत्ते की डिजाइन बनाई हुई हैं और वो लकड़ी के बनाए हुए हैं।

आगे कुछ रंग बिरंगे डब्बे रखे हुए हैं।

इस दृश्य में एक बहोत बड़ा पोस्टर दिखाई पड़ रहा है जो की सफेद और पीले रंग का है।

पानी के अंदर के छोटे छोटे कंकड़ और बालू भी दिखाई पड़ रहे हैं।

आगे में एक नांद है जो की ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा--

ऊपर में सफेद और नीचे रंग बिरंगे दिखाई पड़ रहे है।

इस दृश्य में बहुत सारा भीड़ दिखाई पड़ रहा है।

सामने में एक बोरी दिखाई पड़ रहा है जो की सफेद रंग की है।

यह दृश्य पहाड़ का है जहां पे बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं।

कोमल शृंगार एवं गिफ्ट पैलेस लिखा हुआ जो की पीले रंग से लिखा हुआ है।

यह दृश्य एक दुकान का है जहां पे कबड में बहोत सारे डब्बे और हॉटपॉट वगैरा रखे --

साइड में छोटे छोटे बोर्ड टाइप से लगाए हुए है जो कि सफेद रंग के हैं।

दृश्य से बहुत सारे पाइप्स दिखाई पड़ रहा है जोकि नीले रंग के प्लास्टिक में किए हुए हैं।

साइड में सुतरी के बोड़े दिखाई पड़ रहे है जो की भूरे रंग के हैं।

बगल में एक ए_सी लगाया हुआ जो कि सफेद रंग का दिखाई पड़ रहा उसका डायना भूरे रंग का दिखाई पड़ा रहा।

पेड़ पे एक और पोस्टर लगाया हुआ है जो की पीले रंग और सफेद रंग का है उसपे लाल और काले रंग से कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है।

इस दृश्य में साइड साइड में बहुत सारे फूलदान दिखाई पड़ रहे है नीचे--

उसे पे बहोत सारे पिक्चर्स भी बनाए हुए हैं।

उसके ऊपर नीले रंग से आकांक्षा फर्नीचर वर्क लिखा हुआ है और उसपे कुछ पिक्चर्स भी बनाये हुए हैं।

एक साइड एक छोटा सा कैंची लटकाया हुआ है जोकि भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

बहुत सारे रिबन भी लगाए हुए जो की तीन कलर के हैं।

काले रंग का एक तार दिखाई पड़ रहा है।